आप खुला आसमान के साथ-साथ भरपूर हरियाली के साथ एक छोटी बिल्डिंग दे --

बहोत से चावल के रोटे और आटे के--

आप यहाँ पर देख सकते है कि द्वार पर दो फीते लगाए गए लगाए गए--

आप देख सकते है की एक जू का नज़ारा है जहाँ थोड़ी बहोत घास है।

आगे लाल रंग का कोई ट्रैक्टर नज़र आ रहा है।

और इस जमीन पर घास भी हरे देख सकते है और ठीक पीछे वेन भी देख सकते है।